वहां बीच में कुछ आदमी खड़े हैं और एक पुलिस आदमी खड़ा है इस दरबार में जाने के लिए बाहर सीढ़ियां बनी हुई हैं।

यहां पर सामने कुछ बिल्डिंगे बनी हुई है और बीच में गेट लगा हुआ है।

और पानी के उधर किनारे पर बहुत ही बड़े पेड़ लगे हुए जो बहुत ही गहरे है।

रूम के आगे हॉस्टल के आगे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड के अंदर--